दिख रही है जिनमें वे संगीत बजा बैठ कर संगीत बजा हुए है और ऊपर मछली की लकड़ी की मछली दिख रही है।

जोकि एकेडमी है जिसमें बच्चों को हेयर कट करना --

यहां पर किसी के लिए बर्थडे शादियां किसी से एनिवर्सरी के लिए --

हैं का भिन्न-भिन्न के कलर हैं एक का पिंक है तो एक का येलो है येलो पे ब्लू और --